सजाया हुआ है और हैप्पी बर्थ्डै कर के इंग्लिश में लिखा हुआ है।

होटल मेहंदी पैलेस कर के इंग्लिश में लिखा हुआ है और सफेद रंग के कार और ऑटो खड़ी हुई हैं।

यह चित्र में पेट्रोल पं दिखाई दे रही है। वहीं पे इलेक्ट्रिक --

ऑरेंज कलर का है। उस पर जे पी सी में टा करके हिन्दी में नीले रंग से लिखा हुआ है।

और सभी कार छुपाई होता है कर के हिन्दी मे।

और वहीं पे टरोट दिखाई दे रहा है।

कलर का टी-शर्ट पहना हुआ लड़का और काले रंग का टी-शर्ट पहना हुआ लड़का खड़ा हुआ है।

करीम नगर डेरी कर के इंग्लिश मे लिखा हुआ बोर्ड नज़र आ रहा है।

वही पे ये कंकर नज़र आ रहे हैं और हरे रंग के पत्ते नज़र आ रहे हैं।